और उम्म बहुत सारी लड़कियां हैं।

तस्वीरे है और बहोत सारे लोग खड़े हैं।

आने जाने का द्वार है बड़े छोटे साइज़ का।

ओपन जिम लिखा हुआ है बहोत सारे लोग है जो कुछ--